बादल भी दिखाई दे रहे हैं ऊपर छोटे-छोटे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जैसे की मंदिर की सफेद कलर से पेंटिंग हुई है। ]

--पे स्टेशन भी दिखाई दे रहा है जो ट्रेन भी चल दिया है मुझे पता नहीं है कहाँ ट्रेन जाती है गाड़ी जाती है यहाँ पर अच्छे बड़े-बड़े पेड़-पौधें भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे--

बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है यहाँ पे स्टेशन भी दिखाई दे रहास्टेशन के भी लगे दिख रहे है तार भी दिखाई दे रहे खंभे भी दिख-- दिखाई दे रहे बहुत सारे चीज दिख रही है काफी सुंदर भी लग--

यहाँ पे कुछ घास गाय भी चल रही है भैंस भी चल रही है चल रही है और यहाँ पे अच्छा लग रहा मकान--